और पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

एक बड़ा सा बैंक दिख रहा है।

बैकग्राउंड ब्लर है ।

काफी सुंदर जगह है कुछ घर भी दिख रहे है।

यहाँ पर मुझे एक खुला एरिया दिख रहा है।

और लोग भी वहां खड़े हैं।

एंड काफी सारे द फ्लॉवर्स लगे है।

बहुत सुंदर लाइटिंग दे रहा है।

एरिया काफी खुला और साफ है।

यहाँ पर एक बड़ी सी--

बड़ा मैदान दिख रहा है जो काफी ज्यादा क्लीन है।

जो कुछ काम कर रहे हैं एंड्स पूरा कमरा--

यहां पर एक रोड दिखाई गई है जो काफी नीट है।

यहां पर मुझे काफी ज्यादा टायर्स दिख रहे हैं जो काफी बड़े बड़े हैं और--

ब्लैक कलर के टायर्स है।

पीछे कुछ बिल्डिंग्स दिख रही है बैकग्राउंड ब्लर्र दिख रहा है एंड काफी सुंदर टायर्स है।

जो काफी बड़ा और सुंदर है।

यहाँ पर मुझे एक हॉल दिखाया गया है जहाँ काफी ज्यादा चेयर्स लगी है एंड --

एंड आसमान भी दिख रहा है एरिया काफी ज्यादा खुला है।

यहाँ पर मुझे एक जगह दिख रही है जो काफी खुली है काफी ज्यादा पैड पौधे है।

जो काफी सुंदर और पुराना भी है।

काफी ज्यादा गोल्स पड़ा हुआ है।

जहां काफी ज्यादा घने पेड़ लगे हुए हैं रोड पर कुछ गाड़ियां पार्क की हुई दिख रही है।

एंड पीछे काफी सारी बिल्डिंग्स दिख रही है।

यहां पर एक कुक भी है और दुकान में काफी ज्यादा लाइटें हैं।

बैकग्राउंड काफी ज्यादा ब्लर्र है।

काफी ज्यादा बाइक्स खड़ी की हुई है।

यहां पर मुझे होटल का एक रूम दिख रहा है जो काफी ज्यादा बड़ा एंड नीट एंड क्लीन है।

और फर्श फर्श काफी ज्यादा क्लीन है।